जहां एक टेबल लगा हुआ है।

और साथ में एक काउंटर है जिसके ऊपर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है।

डीजल की लगी हुई है मशीन और एक साइड पेट्रोल की मशीन लगी हुई है।

सामने दो लड़कियां खड़ी हुई हैं।

यह एक जगह है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाली मशीन पड़ी हुई है।

गाय बांध रखी है और इस गाय का कलर --

किस थालियां पर रुपीस तीन सौ पचहत्तर लिखा हुआ है और किसी पर तीन सौ पांचवंजा।

जिसके ऊपर लिखा हुआ है लेडिस क्लब अप ओवर और--

और यहां बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है जो कि एक पिंक कलर की लाइटिंग और दो ग्रीन कलर की लाइटिंग है और नीचे स्टेज लगा हुआ है।

एक यह बहोत ही बड़ा गेट है।

कंधे पर पिट्ठू बैग टंगा हुआ है।

फ्लेक्स के आगे बहुत सारी चप्पल पड़ी हुई है।

जिन्होंने मैट बिछाई हुई है और उनके साइड में समान पड़ा हुआ है।

और साइड में एक बोर्ड लिखा हुआ है।

खड़े हुए हैं एक व्यक्ति के बैग टंगा हुआ है और दूसरे व्यक्ति के भीं बैग टंगा हुआ है।